बहुत सारे घांसें उगी हुई हैं दूर-दूर तक बहुत पेड़-पौधे ब पेड़ लगे हुए हैं जो ग्रीन कलर के हैं आसमान है जो पूरा स्काई ब्लू --